यहां पर हमें एक सैलून नजर आ रहा है। इस सैलून में हमें--

एक नर्सरी दिखाई दे रही है। इस नर्सरी के ऊपर ग्रीन कलर का--

यहां पर हमें एक हॉस्पिल का--

यहां पर हमे दो लोग रिसेप्शन पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सीमेंट घोलने की मशीन दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें अ ऊपर की तरफ भी कुछ पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज़ में हमें एक फैक्ट्री नजर आ रही है।

यहां पर टीन सेट से बनी हुई एक बड़ी सी फैक्ट्री है।

लोहे का कुछ मटेरियल बनाकर लाइन बाय लाइन जमा कर रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

अ एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है इस फैक्ट्री में पीछे से--

एक विंडो से सूर्य की रोशनी अंदर आती हुई नजर आ रही है।

इसमें दो से तीन मशीने यहां पर लगी हुई दिख रही है।

बहोत सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

और यहाँ पर बड़े-बड़े से डाइनिंग टेबल और कुर्सियों का अरेंजमेंट है और इन टेबल्स पर --

यहां पर एक बहोत ही सुंदर सा बेडरूम --

ऊपर की तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

अ कुछ पेड़ लगे हुए हैं कैंपस में और यहां का बाहर एक छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और यह बिल्डिंग काफी बड़ी है इस स्कूल का नाम मां शारदा विद्या मंदिर--

पीछे की तरफ यहां पर हरी भरी घास दिखाई दे रही--

यहां पर हमे एक साइकल जाती हुई नजर आ रही है और दो ठेले यहां पर--

बहोत ही खुल इलाका दिखाई दे रहा है और--

ईंटो का पत्थरों का काम यहां पर अभी चल रहा है।

एक वाइट कलर की बस सामने की तरफ और यह पूरी तरह से--

नाइट लैंप सुंदर सुंदर रेड कलर के हैं।

यहां पर एक नदी का या समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा है।

नाश्ते की टेबल पर डाइनिंग टेबल पर दो पानी के ग्लास रखे है।

एक सुंदर सा ग्राउंड प्लेग्राउंड कहे हम यहां पर दिख रहा है।

शेप में अ मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं जिसका कलर है ब्लू कलर --

यहाँ पर हमे एक कुछ महिलाएँ दिख रही--

एक आ ए_के फिटनेस जिम का बैनर लगा हुआ दिखाइ दे रहा--

कुछ लोग उसके सामने की तरफ बैठे हुए हैं जो की ऑफिस यूनिफॉर्म में हैं।

उन्हें यह कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सोफा लगा हुआ दिख रहा--

इस सोफे पर हमें गद्दा और कवर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस गद्दे पर --

एक कंडक्टर भी यहां पर यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ दिख रहा है।

गाजरी कलर से पेंट है इसमें व्हाइट कलर भी है।